आपको किराणे की दुकान दिख रही है कुछ लोग यहाँ पे सब्जी बेचते हुए दिख रहे है कुछ लोग यहाँ पे सब्जी खरीदते हुए दिख रहे है आप देख सकते है यहाँ पर एक आंटी दिख रही है हम लाल कलर का एक झोला लेकर खड़ी है।